कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे किसी मीटिंग की तैयारी होने के लिए--

एक बच्चे के अच्छे खासे छोटे-छोटे बच्चे खुशनुमा माहौल में है।

आगे में पेड़-पौधा दो बाइक --

बीमार आदमी स्ट्रेचर पे लेटा हुआ --

यहाँ पे लोग योग कर रहे हैं।